ये एक स्कूल है ये देखने में बहोत बड़ा है इसके दो आगे फाटक लोहे के लगे हुए हैं।

ये एक प्लेटफार्म है यहां पे बहोत सारे फूल लगे हुए हैं कुछ बैंगन लगे हुए--

गणेश लक्ष्मी के दो स्टिकर लगे हुए हैं और यहां पे बड़े से डिब्बे रखे हुए हैं।

ये एक पार्लर है यहां पे लड़कियां तैयार होती हैं इसमें एक बडा सा शीशा लगा हुआ है।

आगे फर्श पड़ी हुई है एक हवन बना हुआ है।

और एक दो चुन्नी पहनने लगी हुई पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

जो सफेद कलर के हैं अ कुछ एक ही में बैठे हुए हैं।

उसपे कुछ लिखा हुआ है और ऊपर लाइटें लगी हुई है।

और यहां पे एक लंबी हरी हरी घास की लाइन बनी हुई है।

ये कपड़े का शोरूम है यहां पे पंखे वगैरे बहोत सारे लगे हुए--

और एक यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है जो कपड़े खरीद रहा है।

एन_एच फोर थर्टी फोर का होटल है।

और छोटी छोटी सी मछलियां है कुछ मछली बहुत बड़ी है।

ये एक मछली बाजार है यहां पे बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई हैं।